एक दो पेड़ पौधे भी बहुत सारे घने पेड़ दिखाई दे रहे हैं जो कि हरे रंग के हैं और छोटे छोटे पौधे भी बहुत सारे दिखाई दे रहे हैं।

जहां पर जिम का काफी समान पड़ा है।

और जो की नीले रंग के है और बाहर भी डिजाइन --

औरतें अलग अलग कलर की साड़ीयो में खड़ी है एक के सफेद है बाकी सब गुलाबी फीके कलर की पहनी हुई हैं।

यह एक क्लास रूम है इसमें बच्चे बैठे हुए हैं उनकी ड्रेस सफेद रंग की है आगे बोर्ड लगा हुआ है।

और एक स्कूल की फोटो भी दिखाई दे रही हैं जो कि दो मंजिला हैं।

साइड में से काले रंग की है और नीचे लाल रंग से इस कुर्सी को यहां पर पेंट किया गया है।

और यह फोटो रात में ली गई हैं जिसमें नीचे हरे रंग की दूब एवं --

इस तस्वीर में एक बहुत बड़ी सी बिल्डिंग दिखाई दे रही है जो के सात आठ मंजिले बिल्डिंग है।

जो कि लाल रंग की पिट्ठू से डिजाइन की हुई हैं इस बरामदे का रंग भी सफेद रंग है और इसमें--

सब छोरियां खड़ी हुई हैं और बीच में एक लड़का भी खड़ा हुआ है।